बहुत ही सुन्दर नजारा है एक व्यक्ति बाइक से कहीं जा रहे है उसके रोड के उस साइड दो मंजिला भवन है उस भवन में एक व्यक्ति अंदर जा रहे है।

ढलते हुए सूरज का यह तस्वीर है। कुछ बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं।

एक जनरेटर भी है वहाँ पे एक प्रतिबिंब भी है जो इस चौक का बसाया है उनकी प्रतिमा इस चौक पे बनाई गई है उनको शत-शत नमन ।

इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। लाइफस्टाइल बदलेगा। अच्छा से काम करेंगे लोग।